इस फोटो में मुझे एक ईंट का घर दिख रहा है।

बीच में एक बोट दिख रही है।

नीचे घास दिख रही है।

ऊपर शट्टर में पेंट से लिखा गया है।

राइट साइड के कॉर्नर में एक लाल और ब्लैक कलर के बाइक भी दिख रहा है।

ग्रीन कलर के टेबल भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बहुत सारे औरत और आदमी दिख रहा है।

और एक पत्थर की आप ऊपर बहोत सारे कपड़े भी लगा के रखे हैं।

एक आदमी लाल टोपी पहन के अंदर की तरफ जा रही है दिख रहा है।

एल_जी लिखा हुआ आगे दिख रहा है।

ओनियन भी दिख रहा है और प्याज भी दिख रहा है।

पीछे की तरफ लाल कलर की बिल्डिंग भी दिख रहा है।

लाल कलर के पोस भी दिख रहा है।

कुछ लोग चल रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं।

एक तालाब दिख रहा है।

एक ओवर ब्रिज दिख रहा है।

एक बेंच लगी हुई है।

बीच में आग जलाई गई है।

इधर में एक साइन बोर्ड दिख रहा है जिसमें लिखा है विजार्ड टेक कंप्यूटर अकादमी ।

इस फोटो में मुझे एक कंप्यूटर दिख रहा है।

टेबल के ऊपर बहुत सारे पेपर्स भी दिख रहा है।

और एक लाल कलर के चेयर भी दिख रहा है।

इस फोटो में मुझे एक नदी दिख रहा है।

बहोत सारे गछिया भी दिख रहा है।

एक लाल कलर के बैग भी दिख रहा है।

फोटो में लाल कलर के मैट्रिक्स भी दिख रहा है।

राइट साइड गार्डन में बच्चे भी दिख रहा है छोटे छोटे।